बहुत अच्छा दिखत हे का बताओ इहाँ बहुत ओदे आदमी ह का का बात करत हे लागत हे ईही मन बहुत अच्छा हे बहुत अच्छा मस्त दिखत हे ए मन मस्त हे।

ए मा मस्त हमर संगी मन दुनु घुमे जातेन हमन अउ मस्त एमा पइसा मिलतिस हमन खातेन -पितेन पहिर एक करोड़ धर के जात रतेन बढ़िया दिखत सब कुछ।

मस्त दिखत हे आदमी मन बढ़िया हे एक नंबर दिखत हे का पता मस्त बहुत अच्छा आदित्य आदित्य आदित्य आदित्य आदि आदि--